यहाँ पर बहोत सारे मिट्टी पड़ी हुए दिखाई दे रही है। गड्डे खुदे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जे.सी.बी दिखाई दे रही है। जे.सी.बी का मुँह गड्डे में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

साईकिल दिखाई दे रहा है ऊपर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। जिसमे पेशंट पॉइंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर कुछ कपड़े --

पीछे भी एक खम्भा दिखाई दे रहा है। लोहे का बड़ा गेट दिखाई दे रहा है। ऊपर चद्दर दिखाई दे रहा है। चद्दर के बाहर एक सफ़ेद रंग के गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जो कि कलर की हीरे पर माला टंग रही है। बलून टंग रहे है एक गोल-गोल लाइट टंगे रही है और पर्दे भी टंगे हुए दिखाई दे रहे है जो कि लाल तथा ऑरेंज कलर --

पास-पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हरे कलर की दीवार बनी हुई है। दीवार में लोहे की जाली लग रही है। दीवार के पास सड़क दिखाई दे रही है। दीवार के किनारे पौधे लगे हुए दिखा --